ये एक नर्सिंग होम एंड टॉम सेंटर है ये हॉस्पिटल है हॉस्पिटल है।

इसे काट काट सकते हैं इसमें गेहूं जो निकलेंगे उससे हम आटा बनता है।

वो हम पढ़ाई करते हैं मतलब पढ़ाई होती है बच्चे बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं स्कूल में।

बेल रात कॉफी होटल जहाँ पर हम कॉफी पीने के लिए जाते हैं।

वो करना हो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पैसे किसी के खात में पहुंचाने हो।

करवाना होता है तो उसके लिए हमें उसके लिए हमें उसको गैराज में देना पड़ता है यहाँ पर --

टवर होता है ये टवर हमारे लिए मतलब नेटवर्क नेटवर्क हमे फोन में जो मैसेज आते है।

पार्किंग की जगह होती है पार्किंग की जगह बोहोत ही खूबसूरत घूमने के लिए होती है। यहाँ पर बच्चे स्कूल ट्रिप भी होती बच्चे आते हैं स्कूल से घूमने के लिए आते हैं जगह पर।

ये बहुत अच्छी लगती है और मतलब ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए होते हैं वो जगह।

बहुत अच्छी सुविधा हो सुविधा है हम लोगों के लिए यहाँ पर हमारी --

और मतलब मैच भी खेलते है बहुत इंजॉय भी करते है बहुत अच्छे मतलब अच्छा रहता है --

देखने के लिए कपड़े हमें हर तरह के मिल सकते हैं हम जैसे कपड़े चाहते हैं उसे हमें कपड़े मिल सकते हैं। हमें मॉल जो होता है हमारे लिए बोहोत --

साइकिल से आते है कार से आते है। इसलिए इसीलिए हमारे यहाँ पार्किंग के लिए जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे --

पैसे हम एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाकर पैसे निकाल सकते हैं और जिस तरह से यहाँ पर --

मजबूती जो होती है वो काफी ही अच्छी मजबूती जैसे --